यह एक मॉल की फोटो है यहां पे साड़ी में पुतला खड़ा है जो ग्रीन और येलो कलर की साड़ी --

यह माताजी और काली माता कृष्ण भगवान और शिवजी विष्णु जी कान्हा जी सबकी फोटो लगी हुई है।

और विष्णु भगवान जी की मूर्ति भी है यहां पे तीन अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं और पीछे भी बहुत सारे मूर्ति रखी हुई है।

और यह उसका पोस्टर भी लगाए रखा है यहां आस पास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है।

डी_जे पार्टी रखा है और बहुत सी डिजाइनिंग बना रखी है पास में एक मैनेजर है जो --

यह एक बर्डे फोटो है यहां एक बच्चे का बर्डे है केक --

जय श्री राम ऊपर लिखा हुआ है यहां पे नीचे बिछे हुए हैं चटाई --

आप यहां आके संपर्क कर सकते है इन नंबरों पे और यहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है पास में लाइट है वाश रूम है।

अलग अलग तरीके से बैठे है डाइनिंग टेबल रखी हुई है एल_सी_डी के लिए अलग टेबल रख रखी है और --